यहां पर दो सोफे रखे गए है और नीचे गद्दे बिछाए गए है।

जहां पे आगे मुझे एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

जहां पे मुझे बहोत सारी चीजे रखी हुई दिखाई दे रही है।

बगल साइड में मैं पहाड़ों को भी देख पा रही हूं।

आस पास में बहोत सारे पेड़ों को भी देख पा रही हूं।

यहां पे भगवान के अंदर मूर्तियां रखी गई हैं।

रेड अस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड लिखा गया है।